यहां एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि किसी शहर या देहात का यह दृश्य है।

यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से काफी सुंदर दृश्य है।